यह एक सफेद बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहां पर बाहर गाड़ी भी खड़ी --

यहां पर नीले कलर की कुर्सियां नजर आ रही--

कुछ गाड़ियां और भी नजर आ रही एस_बी_आई का पोस्टर नीले कलर का नजर आ रहा है।

अलग अलग टाइप के उपकरण बहुत ही अच्छे नजर आ रहे --

व्यवस्था भी की गई है यहां हरा-भरा ग्राउंड भी नजर आ रहा --

यहां पर हरे भरे मैरिज गार्डन दिख रहा है धरातल का रंग हरा दिखाई दे रहा --

यह एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा--

एक इंसान की शर्ट का कलर येलो दिखाई दे रहा --

यहां पर एक लेडिज अपने बच्चे से बातचीत करती नजर आ रही --

इसके अलावा इंटरप्राइजेज का भी बोर्ड नजर आ रहा --

वह एक दीवार को ठोकते हुए नजर आ रहे हैं।

जहां पर सफेद कलर की इमारत--